एक के कंधे पर ल बैग टंगा हुआ है।

और एक बकाट भी सामने दिख रहा है।

पानी से निकाल कर खा रहा है।

जिसमें अरबी के बहोत सारे पत्ते लगे हुए है।

इस दृश्य मे एक प्लाट जैसा कुछ दिख रहा हैं जिसमे--

यही पुराने और बहुत से लड़के और आदमी भी नज़र आ रहे है।

और मिट्टी भी बहुत सी पड़ी हुई है।

इस दृश्य में एक हड्डियों का ढांचा दिखाई दे रहा है।

किसी सजावट वाले स्थान पर ख खड़े हुए हैं और--

वह किसी शादी विवाह में खड़े होकर फैमिली पिक्चर ले रहे हो--

योगा कर रही है कुछ लड़की मोटी भी है और कुछ पतली भी हैं।

जो एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी बनाते हैं।

लिफ्ट लगे हुए है और एक एग्जैक्ट फैन भी लगा हुआ है।

दिखाई दे रहा है जिसमें चौपाटी फास्ट फूड रखे हुए है।

ब्लैक कपड़े पहने हुए है और एक वाइट कपड़े पहने हुए है झालर--

वह दो बाल्टियों में दोनों जने अपने-अपने पानी भरे हुए है।

इस दृश्य में एक पार्क दिखाई दे रहा है जिसमें नटराज की बहुत बड़ी मूर्ति --

यह तरबूज बड़े बहोत ही बड़े-बड़े और रंग-बिरंगे--

और बोरियों को उठाकर सर पर रखकर --